और कॉपी किताब बहोत रखी हुई है लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है और एक ए_सी लगी हुई है और उसमे लिखा है वाई_ओ_यू वेलकम वाई_ओ_यू --

और बहुत हरी भरी घास लगी हुयी है और स्कूल का कलर है सफ़ेद लाल और एक बाइक भी खड़ी हुई है बगल में --

छोटा सा उसे पर लिखा है पेटीएम और कुछ लोग खड़े हुए हैं। पीले कलर के पन्नी भी एक टंगी हुई है। पीछे एक बाइक खड़ी हुई --

चार पिलर बने हुए हैं और बीच में लोहे का दरवाजा बहुत बड़ा लगा हुआ है और एक साइकिल काली कलर की खड़ी हुई है ऊपर ऑरेंज कलर का झंडा लगा हुआ है।

यहाँ पे एक सामने टी.वी चल रही है और कुछ आंटी लोग देख रही हैं और साड़ी पहनी हुई हैं और सामने एक पोस्टर लिखा हुआ है।